रोड पे एक ऑटो और बाइकें दिख रही हैं।

इ बोर्ड व्हाइट कलर का है और छोटे-छोटे बोर्ड भी लगे हुए है जिसपे ल एजुकेशन हब लिखा है।